और यहाँ पे सामने में हमको दो-तीन तरह का प्रॉन्स भी दिखाई दे रहा है एक व्हाइट प्रॉन्स है एक रेड प्रॉन्स है और एक उधर ब्राउन कलर का प्रॉन्स दिख रहा है।

ये किसी नाई की दुकान है जहाँ पे दो चार लोग अपना बाल बनवा रहे है और इसके ऊपर का जो छत है --

यहाँ एक मछली बाजार है मछली बेचने वाले लोग बहोत सारे हैं और खरीदार लोग भी हैं।

यहाँ पे एक बैंक है एक बिल्डिंग है बिल्डिंग के नीचे वाले हिस्से में बैंक एक बना हुआ है बैंक का ए.टी.एम. है और वहां पे चार-पांच लोग खड़ा है।

यह पटरा कह सकते है उसको और उसपे बहोत तरह की मछली रखी हुई है बहोत तरह की मछली है रेलू कटला फिश बॉम्बिल।

ये फोटो कहीं कंस्ट्रक्शन साइट की फोटो है जहां पे एक इंजीनियर साहब है।